जिधर दो गाड़ी वेट कलर का खड़ा हुआ है.

सामने छोटा-छोटा टी दिख रहा है.

सनसेट दिख रहा है लाइट दिख रहा है.

दोनों साइड में बहुत सारा ट्री दिख रहा है.

एक शर्टर दिख रहा है जो ग्रीन एंड वाइट कलर का है वो.

पूरा क्लोज है इस साइड में एक स्कूटी दिख रहा है.

उस साइड में एक बाइक का पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है एक शॉप दिख रहा है जो खुला हुआ है।

खंबा देख रहा है दूर में.

ये बैठा हुआ है जिसका हेड मी हेड गिअर लगा हुआ है।

जिसका नंबर प्लेट येलो कलर से है.

पीछे करंट की वैद दिख रहा है.

उसका नंबर प्लेट यू पी सिक्स फाईव्ह बी बी सेवेन थ्री नायन थ्री लिखा हुआ है।

यहा पे गर्ल लोग कुछ हैंड वर्क कर रहे है।

आदमी अपना शॉप पे कुछ कर रहा है ब्लू कैरेट दिख रहा है.

के हाथ में एक हेलमेट है.

यहा पे बहुत सारा स्कूटी दिख रहा है एक व्हाइट कलर का कार --

एक पोस्टर दिख रहा है जहां पे भी एक कर का साइन है पीछे भी.

हिल के इस साइड में दिख रहा है.

यहां पे दोनों चेक दिख रहा है.

बगल में एक कोका कोला लिखा हुआ पोस्टर है.

एक यूनियन बैंक लिखा हुआ पोस्टर है.

एक सुपरमार्ट का पोस्टर लिखा हुआ है।

और स्कूटी खड़ा हुआ है वाइट कलर का एक स्कूटी दिख रहा है.

यहा पे एक येल्लो कलर का बिल्डिंग दिख रहा है जिसके विंडो का शेड है रेड ।

दूर में अ दिख रहा है बहुत सारा ट्री ।

यहां पे महिला लोग एंड आदमी लोग एक साथ डांस कर रहे हैं.

यहां पे एक ग्रीन कलर का पोस्टर दिख रहा है जहां पे सुन्नी जामिया मस्जिद.

सामने रोड पे एक पीकॉक खड़ा हुआ है.

कुछ चेयर भी दिख रहा है एक आदमी खडा है।

कागज भी दिख रहा है दूर में एक आदमी खड़ा है.

सीट भी दिख रहा है वो भी रेड कलर का है.

दूर में दिख रहा है एक ब्लू कलर का एक चीज़ है।

यहाँ पे एक तालाब दिख रहा है जिस दूर में एक ब्रिज दिख रहा है।

जिसके बीच में बहुत सारा चेयर है एक.

फ्लोटिंग हो रहा है यहां पे दो चार आदमी दिख रहा है.

जो लोग ट्यूब लेके जा रहा है।

ऊपर का कलर है येलो नीच का कलर है ब्लैक.

एक बिल्डिंग दिख रहा है इस साइड में ब्लैक कलर दिख रहा है थोड़ा लाइट पोज दिख रहा है.

पीछे पहाड़ दिख रहा है सामने ज़ेबरा क्रासिंग दिख रहा है।

रेल का पटरी दिख रहा है साइड में थोड़ा वो रेल का.

थोड़ा वो जो ब्लैक करते हैं ना हेयर में वो दिख रहा है.